तो ये भी एक रेस्टोरेंट ही है यहां पर लोग जाते हैं कुछ खाने के लिए।

ये एक बड़ा सा बिल्डिंग --

ये बाहर से खींचा गया है।

ये एक सुंदर सा रेस्टोरेंट है।

व्हाइट कलर का फ्लावर टॉप भी है।

यहां पर व्हाइट है और फिर ऊपर से लाइट है।

गाड़ी दिख रहा है और फिर बाहर एक रेड कलर का झंडा भी है।

एक ब्लू कलर का पोस्टर और उस बिल्डिंग में दो खिड़की दिख रहा है।

इन लोगों ने शर्ट पहना हुआ है।

ये है एक जिम ब्वॉय जिसका फेस ब्लर करा गया है।

तो फिर पीछे भी बहुत सारा लोग है।

साथ में पेड़ है फिर ऑटो है ऑटो का कलर है डीप ग्रीन ब्लैक एंड येलो ।

यह है एक टेबिल इस टेबिल पर दो ग्लास है एंड ब्लैक कलर के टिश्यू --

यहां पर एक गाड़ी जा रहा है।

फिर ऊपर बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

वहां पर शायद ज्वेलरी मिलेंगे।

नीचे तो सर्वो लिखा गया है।

मे से एक लोग खेल रहा है देख रहे है।

पानी से कुछ दुआ निकल रहा है।

फिर इसके पास एक कैमरा ऊपर है बहोत सारे लाइट और कपड़े भी बहुत सारे है बहोत सारे कलर के।

लोग गए हैं उसको देखने।

ये साइड में एक ब्लू कलर की कर्टेन हैं और फिर ऊपर बहोत सारे फैन है वाइट कलर के।

ये एक छोटा सा दुकान है जहां पर हमें दिख रहे हैं।

इसके पास चॉकलेट कोको कोला पेप्सी स्प्राइट एंड पानी की बोतल भी दिखाई दे रहे हैं।

हाजमोला चॉकलेट्स एंड बहुत सारे लाइक मोटू पतलू पॉपकॉर्न टेढ़े मेढे लेज ।

और फिर यहां पर बाइक है बहुत सारे व्हीकल --

ऊपर लाइट सजा हुआ है।

कुछ लोगों ने सेम यूनिफॉर्म नहीं पहना है।

यहां पर बस खाली एक रूम है जहां पर चेयर एंड टेबल है।

चेयर का कलर है कुछ है ऑरेंज और कुछ है ब्लैक ।

एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है।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

यहां पर बहुत सारे मिठाई मिलता है।

और फिर बाहर हमें बाइक देखने को मिलता है।

ए एक बहुत ही डिजाइन वाला गाड़ी दिख रहा है।

पहना हुआ है सब लोगों ने धोती पहना हुआ--

यहां पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं।

यहां पर शायद पता नहीं क्या हो रहा है और आसपास बहुत सारे बिल्डिंग्स भी है।

इसका कलर है ग्रीन कलर का।

फोटो दिन में खींचा गया है।

और फिर इसके आसपास दुकान है।

उ है जो ब्राउन स--

आस पास बहुत साफ सफाई है और कुछ भी नहीं है।

जंगल है यहां पर एक तालाब है छोटा सा करके।